काफी बड़ा और बाहर में बाउंड्री बनायी गयी है ।

आप देख सकते है यहाँ पर एक तरफ एक खिड़की और दूसरी तरफ और एक खिड़की और बीच में खुले जैसा है ।

ये एक मस्त बनाया गया।

टेस्टी भी लग रहा हैं।

जो काले बादल छाए हुवे है ।

जैसे की देख सकते है राईट साइड में अब्दुल कलाम --

बाकी आप लोगो को तो दिख--

यहाँ पर चरावे भैंस चरा रहे है दो भैंस दिख रहे है ।

और एक ये मेंन मेंन रोड है।

यहाँ और यहाँ बगल में भी देख सकते है बहुत सारी दुकान है।

टो इस बाई वहाँ प इस भाई वा के साथ फोटो खिंचा पायेगा कु छुते हुए फोटो खिंचाया हैं।

गाड़ियाँ खड़ी है बाइक बस --

पार्क भी कहा जा सकता है या तो फिर जानवरों को यहाँ पर रख कर पाला जाता है ।

इंग्लिश में डंकी और इन्हें पाला जाता है यहाँ पर देखकर लग रहा है की काफी अच्छी जगह होगी ।